इस तस्वीर मे हमे बहुत से गाड़ी दिखाई दे रहा है बाईक दिखाई दे रहा है कार दिखाई दे रहा है व्यक्ति दिखाई दे रहे है परदे लगे हुए दिखाई दे रहे है पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है।

इस तस्वीर मे बहुत से बिल्डिंग दिखाई दे रहे है बहुत बड़ा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है इसमें बहुत बड़ा बहुत सी खिड़की लगी हुई दिखाई दे रहे है ताड़ दिखाई दे रहा है खम्बा दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में हमें एक पार्क की तस्वीर दिखाई दे रही है। जहाँ- कुछ बच्चे दिखाई दे रहे है।

और एक बहोत से खेलने कूदने के सामान दिखाई दे रहे एक्सरसाइज करने के सामान दिखाई दे रहे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे घास दिखाई दे रहे पत्ते झड़े हुए दिखाई दे रहे है।

ईस तस्वीर मे हमे एयरटेल का ऑफिस दिखाई दे रहा है एक कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे है कासील का दीवार दिखाई दे रहा है।

बहुत से पंखे दिखाई दे रहे है लाइट दिखाई दे रहे है लोहे के बहुत बहुत बड़े बड़े खंबे दिखाई दे रहे है कुछ व्यक्ती दिखाई दे रहे है।

बहुत से लाइट दिखाई दे रहे है बहुत से लोग दिखाई दे रहे है ए.सी. लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर मे हमे एक समुद्र की तस्वीर दिखाई दे रही है समुद्र या नदी जैसा कुछ लग रहा है।

यहाँ कुछ लोग दिखाई दे रहे बहुत से बड़े बड़े खंबे दिखाई दे रहे है पानी का रंग नीला नज़र आ रहा है आसमान दिखाई दे रहे लगा हुआ दिखाई दे रहा है।